अभी जस्ट ये खुला हुआ है या फिर बंद है लेकिन ये --

यहाँ तीन लगे हुए हैं एक ए.टी.एम. मशीन है।

यहाँ चर्च में प्रे करने जाते हैं।

ये किसी रेस्टोरेंट या किसी कैफ़े के अंदर का फोटो है जहां वाल पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं फैन है डेकोरेशन के लिए बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और शायद यहाँ काफी मिलती होगी दीवार पर पोस्टर में काफी और चाय की फोटो बनी हुई है।

ये इंडियन आयल पेट्रोल पंप के बाहर का फोटो है जिसमे रेड और ब्लू उसी का साईन होता है बाहर यहाँ लोग आदमी अपने गाड़ियां मे पेट्रोल भरवाने आते हैं कार बाइक या फिर किसी भी तरह के गाड़ी में।